मुझे इस तस्वीर मे दिखाई दे रहा है की यहाँ पत्थरों से बना हुआ दीवाल है और मुझे यहाँ एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है दीवाल का रंग सफेद एवं काले कलर का--

इसमें मुझे एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान दिखाई दे रहा है। जिसमें बाहर बहुत सारे सूट किसे रके हुए। इसमें मुझे टीना राका दिखाई दे रहा है। इसमें मुझे--

यहाँ नजर आ रहा है कि दो आदमी यह डांस की तैयारी कर रहे है जिस जो एक आदमी मास्क अ ल ब पहन हुआ है तथा एक आदमी अपने हा हाथ अपने हाथ में माइक रखा हुआ है।